चाँदीनी की और कुछ लाल रंग के गमले में फूल लगे हुवे हैं।

वही सामने की ओर हमें हरे-भरे घास दिखाई दे रहे हैं।

वही हम यहाँ कुछ लोगों को मजे करते हुए देख रहे हैं कुछ यहाँ फोटो खींच रहे हैं और कुछ पानी से खेल रहे हैं।

वही खाने के साथ-साथ यहां पर चटनी भी दी गई है।

एक मॉल का है जिसमें हमें तीन लोग दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

स्कूल का दृश्य है जहाँ बाहर की ओर हमें बोहोत सारे स्कूल बस रखे हुए दिखाई दे रहै हैं वही स्कूल के कुछ विद्यार्थी योगा करते हुए हमें दिखाई दे रहै हैं।

तस्वीर एक जिम का तस्वीर है जहाँ हमें बहोत सी मशीने दिखाई दे रही हैं।